एक बिजली के खंबा है पोल --

जो कि सिल्वर रंग का है।

एक लंबा सा टॉवर दिख रहा है।

छत पर टंकी रखा हुआ है जो कि काले रंग का है।

जिसमें प्लेयर दिखाई दे रहे हैं।

जो की उजले रंग का है।

एक काले रंग का हेलमेट भी है।

पर्पल रंग का टोकरी है।

इसमें लीची रखी हुई है।

लीची टंगा लटका हुआ है।

इस दृश्य में जो दिखाई दे रहा है वह एक सैलून की दुकान है।

जिसमें राइट साइड में डॉक्टर जांच कर रहा है।

बहोत सारे पेड़ है जो की हरे रंग के हैं।

ड्रेसिंग है और सोफा है।

मिट्टी का घर है जो कि भूरे रंग का है।

और खपड़ा है।

भूरे रंग का भी डब्बा दिखाई दे रहा है।

और एक रिक्शा है।

और एक स्कूटी है जो कि ग्रे कलर की है।

इसमें गांधी स्मृति टाउन हॉल डाल्टनगंज लिखा हुआ है।

जिसमें एक बस लगा हुआ है जो की उजले रंग का हैं।

और एक ऑरेंज कलर का डब्बा है पेटी।

इस दृश्य मे जो दिखाई दे रहा है वह एक रेस्टोरेंट का है।

उसके ड्रॉअर में एक लॉक लगा हुआ है।

इसमें काले और लाल रंग से स्मार्ट सिटी वाराणसी लिखा हुआ है जो की वाइट रंग में है।

दो लड़कियां दिखाई दे रही है जो कि जिम में है।

दृश्य में बांस से बना सोफा दिखाई दे रहा है।

और भालू भी है।

इस दृश्य में टेंट का समियाना बना दिख रहा है।

गोल चक्र बनी हुई है जोकि तिरंगा कलर का है।

लाइट से डेकोरेट किया गया है झालर से।

उसके बगल में लाल कलर का ऑटो है।

इस दृश्य में जो दिखाई दे रहा है वह एक शादी के लिए डेकोरेट किया गया है।

इस दृश्य में जो दिखाई दे रहा है वह एक कैपिटल यूनिवर्सिटी है।

एक ब्लू रंग का साइकिल भी दिखाई दे रहा--

कुछ महिलाएं पूजा भी कर रहे हैं।

एक लड़की है जो की रेड और ब्लू कलर का फ्रॉक पहनी हुई है।